और दो व्यक्ति खड़े हैं एक लेडिज है एक महिला है। लेडिज ब्लू कलर कि टी शर्ट में है और जेंट्स --

एक बिल्डिंग का मुख्य द्वार दिख रहा है जो कि चैनल गेट है और बिल्डिंग का कलर रे-रेलिंग का कलर पीला है और बिल्डिंग का कलर व्हाइट है। उपर आसमान दिखाई दे रहा है कुछ --

यह एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के सामने ग्राउन्ड है। ग्राउन्ड में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और बिल्डिंग के यहाँ झंडे लगे हुए हैं। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। नीचे हल्की-हल्की घास लगी हुई है।

यह एक मेन गेट दिखाई दे रही है जो कि लोहे बना है और सामने रेड कलर कि कार खड़ी हुई है। एक ट्रॉली भी रखी हुई है। बाल्टी भी रखी दिखाई दे रहा है और पेड़ लगे हैं पीछे और--

यह एक शॉप है। शॉप में रैक बनी है। रैक में बहोत सारा सामान रखा हुआ है और एक फैन लगा है जिसका कलर ब्लैक है। लाइटिंग लगी हुई है और आगे झालर लगी हुई है।

एक जिम हॉल है जिसमे बहुत सारी जिम की मशीन रखी हुई जिनका कलर ब्लैक है और विंडो दिखाई दे रही है| एक कांच लगा हुआ दखाई दे रहा है।